मैंदान में छोटे-छोटे घास नजर आ रहे हैं हरी है जोकि।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट का काम चल रहा है।

और यहाँ पर एक बाइक है जोकि बोहोत ही दूर में खड़ी और कुछ बाइकें सामने खड़ी हैं और एक लड़की है जोकि बाइक पर बैठी हुई है और एक लड़का है चल रहा है।

यहाँ पर एक चित्र दिखायी दे रहा है मानो प्रतीत हो रहा है कि यह कोई सैलून है सैलून में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं और ये सैलून का कलर सफेद रंग की है।

और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जोकि ब्लू रंग का शर्ट पहना हुआ है और वो मछली को --

यहाँ एक चित्र दिखाई दे रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है इस चित्र को देखकर की ये कोई मंदिर है।

यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ घंटियाँ लगी गई हैं।

और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए --